रैप दिखाई दे रहे हैं व्हाइट कलर के। एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है। एक स्टूल रखा हुआ है दिख रहा है ब्ल्यू कलर का एक स्कूटी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

हमे सामने एक शटर बंद पड़ी दिख रही है।

यहा पर हमे चार चेयर और एक टेबल रखे हुए दिखाई दे रहे है चेयर का कलर ग्रीन दिख रहा है और यहा पर हमे तीन व्हाइट कलर की प्लेट दिखाई दे रहे।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

हमें यहाँ पर एक जाली की रेलिंग बनी हुई दिख रही है और बलून लगे हुए दिख रहे हैं| बलून का कलर ब्लू और पिंक है।